ये ऊंचा दीवार है। येस दीवार --

ये एक बोर्ड है पुलिस थाने का। ये सड़क है।

ये एक पार्क है। बच्चों का चिल्ड्रन पार्क ।

कांच है | यहां पर एक रास्ता भी है|

यहाँ बड़ा सा मैदान है। इस मैदान में --

ये एक अ होटल है। ये कॉरिडोर है।